बलून लगे हैं ब्लू - वाइट कलर |

ये एक बहुत सुन्दर वाइट कलर का फर्नीचर है।

ये लोग एक साथ एक टेबल पर बैठे हैं एक बेंच पर --